और इसमे पीछे कि ओर कुछ गुब्बाडे भी लगे हुए हैं और पीछे कि ओर कुछ कॉम्प्टीशन का चिट लगा हुआ --

और कई सारे लोग सीमेंट बजरी भी उठाकर एक मिस्त्री को दे रहे हैं और एक मिस्त्री अपना काम बहोत स्वयं से कर रहा है।

और कई सरियाँ गाड़ियाँ एवम साइकिलें भी खड़ी हुई है और बहुत सारे लोग इधर भीड़ लगाए हुए खड़े हुए हैं और कई सारी महिला इधर से उधर टहल रही हैं |

ये एक बोहोत पुराना किला का चित्र है और इस किला के अंदर बोहोत सारे लोग घूमने आते हैं।

और इसके अगल बगल बोहोत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और कई सारे लोग इधर फोटो खीचने भी आते हैं।